यह घर यह घर काफी बड़ा है इस घर में ए.सी. भी लगा हुआ है ।

इस मंदिर के किनारे एक सड़क है यह सड़क पर एक गेट है।

यह जंगल काफी घना है इस जंगल के किनारे एक घर है ।

यह घर काफी बड़ा है । इस घर में ए.सी. लगा हुआ है। यह घर दो तल्ले की है।

यह बिल्डिंग काफी बड़ा है। इस बिल्डिंग को लाल कलर से पेंट किया गया है।

यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक टेबुल रखा हुआ है। इस टेबुल पर एक बैग रखा हुआ है।